गाड़ी का कलर व्हाइट है शोरूम के अंदर एक बड़ा सा टी_वी लगा हुआ --

इस दृश्य में एक बड़ा सा बिल्डिंग दिखाई दे रहा है।

जिसमें बहुत सारी लाइटी जल रही है।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

लाइट लगा हुआ है इनवर्टर दिखाई दे रहा है।

चेयर रखा हुआ है बहुत सारी कॉपी और पेन दिखा--

जिसमें व्यक्ति बैठकर फ्लावर बेच रहा है।

दीवार का कलर व्हाइट है दरवाजे पर शीशा लगा हुआ है।

जिससे पानी गिर रहा है पानी का कलर व्हाइट --

छोटे छोटे घास लगे हुए हैं जिसका कलर हरा है।

एक सोफे में दो तकिया रखी हुई है जिसका कलर व्हाइट है।

तीन बच्चे और एक लेडिस दिखाई दे रही है।

इस दृश्य में साइकल का दुकान नजर आ रहा है।

लाइटें जल रही है लाइटों का कलर व्हाइट है।

मेले का नाम हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला दो हजार उन्नीस है।

बहुत सारा टेबल कुर्सी भी लगा हुआ हैं बहुत सारे व्यक्ति दिखाई दे रहे है।

जमीन पर टाइल्स लगा हुआ है।

पर लाइटें जल रही हैं।

दृश्य में एक बहुत बड़ा सा बिल्डिंग नजर आ रहा है।

बिल्डिंग के ऊपर लोहा छड़ छड़ नजर आ रहा--

आसमान नजर आ रहा है।